यहाँ पे ये गली गई है सामने रास्ता जो काफी बड़ी है और चोड़ी भी लग रही --

आप देख सकते हैं इस जिम में कितनी ज्यादा फेसिलिटी दी गई है | आप यहाँ पर देख सकते हो लाइटिंग वगैरा भी लगाई गई हैं ऊपर --

इनने सेल्फी ली है आप देख पा रहे हो आप उधर दूर पे देखिये उम बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं ।

हेलो दोस्तों आप देखिये ये जो सामने मंदिर है नीचे शॉप भी हैं।